एक छोटा सा फूड स्टाल दिखाई दे रहा है कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे है यहा पर हमें झाड और पौधे दिखाई दे रहे है सड़क पे हमें झाड और पौधे की परछाई भी दिखाई दे रही है।

दिखाई दे रही छत पे भी हमे कुछ लाईटे लगी दिखाई दे रही है यहा पर हमे एक बॅनर दिखाई दे रहा है यहा पर हमें छोटे छोटे गहस और पौधे दिखाई दे रहे है यहा पर हमे --

हम देख सकते है यहा पर हमे कुछ पौधे दिखाई दे रहे है यहा पर हमे हरे भरे पत्ते दिखाई दे रहे है यहाँ पर कुछ हमे बड़े--

तस्वीर मे हम देख सकते है यहा पर हम पुरानी मूर्ति दिखाई दे रही है यहा पर हमे नीचे छोटे बड़े पत्थर दिखाई दे रहे है यहा पर हमे हरी भारी घास दिखाई दे रही है आसपास हमे बड़े बड़े बम्बु दिखाई दे रहे है जोके हरे कल --

दिखाई दे रहा है आसपास हमे झाड और पौधे दिखाई दे रहे है यहा पर हमे काफी गहरा-गहन जंगल दिखाई दे रहा है यहा पर हमें बडे बडे कुछ चट्टानें दिखाई दे रही है यहा पर --

इसमे हम देख सकते है। यहा पर हमे बहुत सारे छोटी छोटी दुकाने दिखाई दे रही है। यहा पर हमे एक आदमी चलता दिखाई दे रहा है। जिसने सफ़ेद टोपी पेन्ट शर्ट और--

फिर हम देख सकते है यहा पर हमे स्टेज दिखाई दे रहे है। स्टेज पे हमे रेड कार्पट दिखाई दे रहा है। यहा पर हमे कुछ ब्राउन कलर का स्पीकर माईक दिखाई दे रहा है। गमले दिखाई दे रहे है।

हम देख सकते है यहा पर हमें कुछ टोकरिया दिखाई दे रही है टोकरियों मे हमे सामान पड़ा दिखाई दे रहा है यहा पर हमे सब्जिया दिखाई दे रही है शिमला मिर्च दिखाई दे रही है यहा पर केले दिखाई दे रहे है पपीता दिखाई दे--

तस्वीर मे हम देख सकते है यहा पर हमे बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जोकि एक हॉस्पिटल है यहाँ पर हमे बिल्डिंग चार से पाँच मंजिल दिखाई दे रही है इसलिए हमे खिड़किया दिखाई दे रही है बालकनी दिखाई दे रही है।

यहा पर हमे झाड़ और पौधे दिखाई दे रहे है। निचे हमे कुछ मिटी दिखाई दे रही है। छोटे-छोटे पत्थर दिखाई दे रहे है कुछ पत्थर दिखाई दे रहे है और पासमे हमे झुले दिखाई दे रहे है। झुले रंगबेरंगी दिखाई दे रहे है।

यहा गमले दिखाई दे रहे है। यहा पर गमलों का रंग हमे ब्राउन दिखाई दे रहा है। ऊपर हमे पौधे दिखाई दे रहे है । यहापर हमे खुला आसमान भी दिखाई दे रहा है। यहा पर हमे झाड और पौधे दिखाई दे रहे है। हरे भरे--

तस्वीर मे हम देख सकते है यहा पर हमे बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के सामने हमे सड़क दिखाई दे रही है सड़क पर हमे बहुत सारे बॅनर लगे दिखाई दे रहे है यहा पर हमे बड़ी बड़ी--

दिखाई दे रही है यहा पर अ कुर्सीया का रंग हमे लाल दिखाई दे रहे है यहा पर टाइल्स लगी हुई दिखाई दे रही है यहा पर हमे ए.सी. दिखाई दे रहे है बड़े बड़े खिड़किया दिखाई दे रहे है यहा पर हमे सफेद रंग के पंखे भी दिखाई दे रहे है यहा बिल--

तस्वीर में हम देख सकते है यहा पर हमें बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसके ऊपर हमें मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजिनीरिंग लिखा दिखाई दे रहा है यहा पर हमें बिल्डिंग हमें काफी काच काच दिखाई दे रहे है यहा पर हमें --

जोकि एक दिखाई दे रहा है जोकि हमे एक बड़ी सी टोकरी मे दिखाई दे रहा है यहा पर हमे संतरे का अ साइज़ हमे काफी बड़ा दिखाई दे रहा है यहा पर हमे उसकी दंडी दिखाई दे रही है।

कुछ बिजली के तार भी दिखाई दे रहे। यहा पर हमे कुछ लाइट लगे दिखाई दे रही है। यहा पर हमे बड़े-बड़े बिल्डिंग दिखाई दे रही है। कुछ कार्स लगे दिखाई दे रहे। बडी बडी होर्डिंग लगे दिखाई दे रही।

तस्वीर मे हम देख सकते है। यहा पर हमे कुछ ड्राय फ्रूट्स दिखाई दे रहे। यहा पर हमे काजू बादाम किसमिस दिखाई दे रही। जीर दिखाई दे रही है। यहा पर हमे--

इस तस्वीर मे हम देख सकते है। यहा पर हुमे सड़क दिखाई दे रही है। सड़क किनारे हमें डीवायडर पे कुछ घास दिखाई दे रही है उगती हुए झाडिया दिखाई दे रही है। यहा पर कुछ झंडे दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर हमें एक क कॉलेज का कॅम्पस दिखाई दे रहा है। यहा पर हमे बिल्डिंग दिखाई दे रही है। बिल्डिंग का रंग हमें लाल और सफ़ेद दिखाई दे रहा है। कुछ खिड़किया दिखाई दे रही है। यहा पर खुला आसमान दिखाई दे रहा है। झाड़ और पौधे भी दिखाई दे रहे है।